घास लगे हुए हैं लकड़ी लगी हुई हैं।

पीछे कोई बैठे हुए है टेबल पे एक खड़े हुए हैं जेंस --